ऊपर में टायर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सीढ़ी दिखाई दे रही है।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

बाउंड्री बनी हुई दिखाई दे रही है झंडा दिखाई दे रहा है।

पानी के अंदर पत्थर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे।

बीच में दुर्गा माँ की मूर्ति बनी हुई दिखाई दे रही है।

एक गणेश जी की मूर्ति दिखाई दे रही है एक कूलर रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में बहुत सारे फूल के पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

सामने में एक बाउंड्री दिखाई दे रही है सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

नीचे गेट दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में सामने में मोबाइल दिखाई दे रहा है नीचे हरे और लाल रंग की कारपेट बिछी हुई दिखाई दे री है।

एक चेयर दिखाई दे रही है सामने में बहुत बड़ी खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं।

पहाड़ के ऊपर काई लगी हुई दिखाई दे रही है।

नीचे हरा रंग का डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में बहोत सारी फत्थर की सिल्लियाँ रखी हुई दिखाई दे रही है।

लोहे की रेलिंग लगी हुई दिखाई दे रही है।